यह एक बहोत बड़ा प्ले ग्राउन्ड है यहाँ पर जैसा की आप देख रहे हैं बहोत सारे लोग यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है।

यहाँ के यहाँ बगल मे ही एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है यह पर ये बिल्डिंग बनने जा रही है ये ग्राउन्ड भी बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है ।

यह एक क्लथ सेंटर है यहाँ पर कई प्रकार की शेरवानियाँ रखी गई हैं जो की देखने में बहोत सुंदर लग रही हैं।

यह ए.टी.एम. इसको आटोमटेट ट्रेलर मशीन भी कहते हैंइसके माध्यम से लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने पैसे निकाल कर--

वो बहोत सुंदर प्रतीत हो रही है एवं मंदिर भी बहोत आकर्षित कर देने वाला है यहाँ पर हिंदू लोग आकर अपनी भक्ती श्रद्धा आदि कर करते हैं।

मन-माने दामों में ना खरीद कर एक केफायती दामों में सामग्री लेकर अपने घर को निकलते हैं।

यह एक विशाल समुद्र है यहाँ पर बहोत स्वच्छ जल बह रहा है ये व्यक्ति अपनी नाव के माध्यम से व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो उसकी नाव में बैठकर इस समुद्र के दृश्य का आनन्द उठायेंगे यह पहाड़ियों के बीच स्थित एक बहोत विस --

ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है ये एक बहोत बड़े बिल्डिंग की तस्वीर है ये तस्वीर बहोत ही सुंदर प्रतीत हो रही है इसमे जो बिल्डिंग दर्शाई जा रही है --